यह एक पेट्रोलियम है यहाँ पर बहुत सारी गाड़िया पेट्रोल भरने के लिए आती है उपर की तरफ आसमान है वह सफ़ेद कलर का है।

यहाँ पर एक बड़ासा जानवर बनाया गया है। वह पत्थरो से बनाया है। उसे बहुत अच्छा कलर किया है।

सामने बिल्डिंग है आजू बाजू में लाइटे भी है।

उनकी वह मूर्तिया है आजू-बाजू मे बहुत बड़ा जंगल है।

वह काम कर रहा है आजू-बाजू मे बहुत सारा सामान भी है यहाँ बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है।

यहाँ पर एक मंदिर है मंदिर के बाहर बहुत सारा डेकोरेशन किया गया है मं--